पुल के ऊपर का फोटो दिख रहा है।

इस फोटो में हमें बहोत सारी लड़कियां दिख रही है जो की रंगोली बना रही है।

एक रबड़ जैसा मूर्ति बना है जिसका मुंह और आंख लाल लाल है और वो काले कलर का है।

और एक पोल भी लगा हुआ है जिसके उपर से बहोत सारी तारे जा रही है।

और उनके माथे पर मोर का चित्र भी बना हुआ है।

बहोत सारे घर हैं। कच्चे मकान भी हैं।

और बहोत सारे घर भी है।

इस फोटो में हमें एक ज्वेलरी की शॉप दिख रही है।

और एक पीले रंग का जनरेटर है उसके बगल में एक--

के सामने में सोफा लगा हुआ है और ऊपर में हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है।

और ऊपर में एक हरे कलर की गाड़ी भी है और एक पीले कलर की गाड़ी भी है।

और कुछ टेडीबियर्स भी है और गाय भी है।

और एक रोहे लोहे का रेलिंग जैसा कुछ लगा हुआ है सफेद रंग का--

जो कि बहोत अच्छा है हरे कलर का और तीन दो तीन तार के पेड़ भी हैं।

काफी अच्छे से सजाया गया हैं।

चूंकि अंदर में बहोत सारे समान है पंखा जैसे पंखा बना हुआ है चार्जर है।

और बीच में गोल गोल से कुछ बने हुए हैं।

तो इस फोटो में हमें एक स्कूल दिख रहा है।

इस फोटो हमे बहोत सारे लोग दिख रहे है।

इस फोटो में हमें एक बेड दिख रहा है जो की बना हुआ नहीं है।

जो की सफेद रंग के ड्रेस पहेन कर लेटे हुए हैं।

कुछ फाइल्स रखी हुई है और पीछे भी कुछ चेयर लगी हुई है।